और लोग कपड़े पहन के कपड़े का रंग लाल है पीला है औरतें उसे पर आदमी खड़े हुए गाड़ी खड़ी हुई है और पेड़ लगे हुए हैं कला है लाल है और लोग लाल है|

यहां पाये मशीन लगी हुई हैं अंदर और आदमी कम कर रहे हैं और मशीनों का रंग सफेद हैं और आदमी कल हेला हैं।

यहां पर मेला लगा हुआ है पूरा

स्कूल रखी हुई उसका रंग नीला लड़की उसका रंग काला है कुर्सियां रखेंगे उसका रंग काला है और सफेद है

यंहा पर खाना बना हुआ है और बोहत सारे लोग काम कर रहे है और ट्रक खड़ा हुआ है जिसका रंग हरा है सफेद है और बोरिया बोहत सारी है ।

और उसका रंग सफेद है लोग कपड़े का रंग काला है गुलाबी है और सफेद है ।

यंहा बहुत सारे झूले लगे है ।

और जिसके कपड़ों का रंग काला है सफेद है जूते पहन के रखा है जिसका रंग काला है पीछे गाड़ी खड़ी हुई है और उसका रंग काला है पीला है ऊपर छत डली है उसका रंग सफेद है लाइट लगी हुई है ।